इस भवन के बाहर मुझे पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

दिखाई गई तस्वीर में मुझे किसी रेलवे स्टेशन की लग रही है।

मुझे इस तस्वीर में कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं जो सीढियों के जस्ट पास में हैं।

इस दुकान के अंदर बहोत सारी छोटी छोटी और बहोत बड़ी बड़ी साइकिले रखी हुई है।

दिखाई गयी तस्वीर मे मुझे एक दुकान नज़र आ रही है।

दिखाया गया दृश्य मुझे किसी होटल की कमरे की तरह लग रहा है।

दृश्य में दिखाया गया भवन कोई धर्मशाला है जिसके बाहर कपड़े सूख रहे हैं।